यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा जो बहुत ही बड़ा दुकान में सामने में--

एक दुकान दिखाई दे रहा है जो क बहुत सारे चाय बना रहा है और कुछ बर्तन दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो स्वेटर पेहना हुआ है बहुत सारे लेज के पैकेट दिखाई दे रहे सर्फ एक्सेल का पैकेट दिखाई दे रहा --

फ्रिज दिखाई दे रहा है जिसमें कोका कोले के बोतल रखे हुए हैं सामने में बहुत सारे आलू के कैरेट रखे हुए हैं टमाटर दिखाई दे रहा है बाल्टी दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर का चेयर दिखाई दे रहा है सोफा दिखाई दे रहा है एक अनवारी दिखाई दे रहा है फ्रिज दिखाई दे रहा है नल दिखाई दे रहा है हाथ धोने का वाशिंग मशीन दिखाई दे रहा है बड़ा सा कल दिखाई दे--

वाइट कलर के बहुत कलर के जूते दिखाई दे रहा है सामने में जूते अंदर में बहुत सारा जूता दिखाई दे रहा है काउंटर दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ--

बाहर में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे जो लकड़ी के बने हुए हैं बाहर से आसमान दिखाई दे रहा है पंछी दिखाई दे रहा है बहुत सारे झाड़ियां दिखाई दे रहा है पौधे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे--

एक टेबल दिखाई दे रहा है जो पूरा सजाया गया जिसके ऊपर फूल के गुलदस्ते रखे हुए हैं पानी के बोतल रखे हुए हैं चियर दिखाई दे रहा है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा--